कुर्सियों के पास मेजे रखी हुई है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है।

यहा पर कई लोग कुछ लोग म्यूजिक भी सुन रहे है यहाँ पर एक आदमी सर पर कैप पहने बैठा हुआ है ।

यह एक तस्वीर जिम की है यहाँ पर बहुत सी ट्रेडमिल नजर आ रही है इस ट्रेडमिल पर हम दौड़ कर अपना वजन कम कर सकते है।

यह एक पुल है पुल के नीचे बहुत ही ज्यादा और गहरा पानी भरा हुआ है पुल बहुत मजबूत बना है।

यहाँ पे हमे ईपपी मिल जाएगी यहाँ पर हमे शैम्पू भी मिल जायेगा यहाँ पर हमे चाय पत्ती भी मिल जाए |